पुस्तक की दुकान है जिस पर बहुत सारी पुस्तकें टंगी हुई है और फर्नीचर में भी फीड है और ये कुर्सी है और कुर्सी के पीछे --

एक दुकान है उसकी अलमारीयो में कैलकुलेटर और किताबे रखी हुई है और फर्निचर है जो मिट्टी कलर का है एक बोर्ड पर भी नीले कलर का ली कुछ लिखा हुआ है गणित की भी एक किताब दो-चार किताबें र-रखी हुई है।